चित्र मा जी आप तें बहोत ही बड़ु जहाज होलु दिख्येंण यह एक जहाज की तस्वीर जेका जै मा जी दुई --

जी आप लोग दिखला की एक आदमी और औरत गाँना छंग गानीये जो की छोटा-सा स्टेज मे खड़े खड़ावाया।

कि दुकान छ जै मा जी कि बहोत सारी किताब बेचण ते रखी रंदिन अलग अलग प्रकार की किताब बेचण त रखी --

ये चित्र मा जी आप लोग देखला यह एक कपड़ों की दुकान छा जख ई कपड़ा बेचणा त रख्यां छन।